आप यहाँ पे यहाँ हम देख सकते है की कई पत्थर और दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ देखिये आप देख सकते है की कितना अच्छा महल में जाने के लिए रोड बनाया गया है।

पीछे की तरफ पहाड़िया दिखाई दे रहे है आगे में सफेद पत्थर --

ये देखिए कुर्सी टेबल दिखाई दे रहा हैं।

-- और रास्ता भी दिखाई दे रहा है यह छोटी -छोटी झाड़िया है दो रोड के दोनों तरफ--

इतनी अच्छी यहाँ की पानी का नज़रा देखने को लग रहा है और यहाँ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है नारियल के --